भूरा दिखाई दे रहा है सड़क का रंग भी भूरा नज़र आ रहा है ऊपर-

जहाँ पर मोमबत्तियाँ और दीपक दिखाई दे रहै है एक छोटा गेट नजर आ रहा है जो कि स्टील का है उस --

एक जल लोहे का गेट दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला नजर आ रहा है एक गाड़ी दिखाई दे रही है जिसका रंग सफेद नजर आ रहा हैं।

गेम में कुछ लोग दिखाई दे रहा है ऊपर ग्रीन रंग--

यहाँं एक दीवार नज़र आ रही है जिसमे खिलौने दिखाई दे रहे है खिलौने में का रंग पीला नज़र आ रहा है।